रंगे बिरंगे फूल हैं और शायद दुकान है गुलदस्ते का दुकान है और गुलाब फूल है ऊपर में लटका हुआ फूल है।

कुछ हैं इसके अंदर जो नई दिख रहा हैं और पीछे का नजारा मस्त हैं ।